यह कोई डांस कंपटीशन चल रहा है जिसमें तीन बच्ची सब लड़की सब डांस कर रही है ।

ये कोई बड़ा स्कूल है जो की बहुत सारे बच्चे सब इधर असेंबली में खड़े हुए हैं और आ-जाए जय हिंद जय हिन्द सब बोल रहे हैंझंडा लगाए हुए हैं उधर दो सर है वो भी आ-ओ झंडा सब लगाए हुए है ।

और बहुत सारे लड़के सब आए हुए हैं और इधर एक लड़का एक लड़की है दोनों फोटो खिरचा रहे हैं ।

यह फ्यूल स्टेशन है जिसमें बहुत सारे आदमी सब इधर फ्यूल भराते हैं अ उधर गार्ड है सब पूरा भीड़ लगाया रहता है पूरा भीड़ लगाया है अ फ्यूल लेने के लिए अ-और फ्यूल स्टेशन है तो फ्यूल तो लगा ही इसलिए ।

यह किसी का घर है जिसमें अ-उसके पीछे अ-कोई अ-कंस्ट्रक्शन का कोई अ-सामान रखा हुआ है उधर झंडा है जो कि वह लहरा रहा है ।